जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक अच्छा सा अ मैदान है जो कि यहाँ पर बहोत ही सारा अ मोटर जान है।

जो की मेरा पसंद है। जो उन उनको मैं मानती हु वो बहुत ही सुंदर सा लग रहा है मूर्तियों--

जैसे की मै देख पा रही हूँयहां पर एक आ बड़ा-सा दुकान हैं मुझे लगता हैंआ यहां पर आ बहुत ही सारे लड़के और लड़किया आते हैं।